और इसके पीछे एक दीवाल भी है जहां तीन तस्वीरे दिख रही है।

और इसमें सीढ़ियों के किनारे स्टील की रॉड लगी है।

दूसरी तरफ नाव में करीबन चार पांच लोग घूम रहे हैं।

दिख रहे हैं एक तरफ एक खंभा भी दिख रहा है सामने की ओर बहोत सारे खंबे के साथ में--

ये एक दवा खाना है जहां की जानवरों का इलाज होता है।

इसमें ढोलक भी नजर आ रहा है ऊपर--

और कुछ लाइटे भी इसमे जल रही है। ऊपर डेकोरेशन भी किया गया है।

लाल रंग का कारपेट है और आधे में हरा रंग का कारपेट है।

बड़ा छोटा छोटा ऐसे करके भी सेट करके लगाया गया है।

ये एक हॉल की तस्वीर है जहां की दो चार टेबल --

भी रखी है और इस एक साइड में फ्लावर पॉट सफेद फूलों से है और कुछ शो का समान दीवारों पे लगा है।

ये एक होटल है यहां की एक कांच के दरवाजे और दो खिड़कियां नजर आ रही है बाजू से जाफरी भी है।

यहां एक सुंदर सा नजारा दिख रहा है।